ये दो तीन चेयर रखी हुई है एक आदमी है जो --

एक बड़ा सा रास्ता जा रहा है स सामने बड़ी सी बड़ी पहाड़ दिख रही है।

एक बड़ी सी गाड़ी है जो जा रही है।

यहाँ पे उम्म सामने काँच के काँच के च टेबल हैं।

कुछ डब्बे हैं जिसमें चूड़ियां उड़ियां झुमके बॉली रखे हुए हैं।

दुकान का एक गेट लगा हुआ है अंदर की तरफ बहोत--

दुकान सामने एक ईटा ईटा रखा हुआ है।

बाहर ऊपर के च अह ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई है।

एक आदमी है जो चश्मा पहने सामने की तरफ देख रहा है अपनी फोटो।

एक काले कलर की बोर्ड है एक सादे कलर की बोर्ड सादे कलर के बोर्ड पर लिख रहा है।

उपर एक माल गाड़ी जा रही है एक खंभा दिख रहा है सामने कि तर--

दूसरी तरफ जंगल दिख रहे हैं दूर घास फूस है बड़े-बड़े खंबे हैं लाइट है तार लगी हुई है।

ऊपर उ सादे कलर की लाइट लगी हुई है बहुत सारी।

छोटे-छोटे पौधे लगाए हैं व कुछ पेड़ गाछ भी है बड़े-बड़े।

जो बाइक के लिए पीछे किसी को बैठाया जा रहा है सामने की तरफ एक ग्राउंड है एक फील्ड दिख रहा है मैदान--

अं एक लाल कलर की घर दिख रही है।

बड़े-बड़े पोल दिख रहे हैं रोड पे कुछ गाड़ियाँ--

उस हाथ कला बनाए हुए हैं जो लेके खड़ी है।

सब्जियां लगाई गई हैं एक एका एका सामने एकाध लड़की है।

उनके पीछे कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं सामने एक लाल कलर की दुकान है जिसके खिड़कियों में जाले लगी है।

सामने एक तालाब है तालाब को बड़े-बड़े पत्थर है ऊपर एक मंदिर है सादा कलर का मंदिर है मंदिर के बाहर कुछ लोग --

दुकान का दीवार ब्लू कलर का दिख रहा है।

सामने दो साइकिल रखी गई है ल लोग एक गोदाम में सारी बोरियाँ ले आ के रख रहे हैं।

ब बहुत सारी खिड़की दिख रही है एक खिड़की सामने की तरफ दिख रहा है जो खुला हुआ है।

पंख इस पंखे ऊपर मोर के ऊपर का हिस्सा ब्लू कलर का है।

कुछ बांस से घिरे हुए पौधे लगाए हैं।

छोटी-छोटी उ बाउंड्री दी गई है बाउंड्री का कलर --

सामने एक किसी का टैचू बना स्टैच्यू बना हुआ है उसके ऊपर एक छतरा सा लगा हुआ है पीछे एक--

दुकान के एक बकड़ी है जो दुकान में घुस रही है।

एक झोपड़ी है झोपड़ी के अंदर दुकान है दो चेयर दिख रही है सामने एक बास खड़ा है बा--

ये एक रूम दिख रहा है यहाँ एक बेड लगा बेड के ऊपर सफ़ेद चादर बिछी है सफ़ेद कलर का तकिया रखा हुआ है ऊपर --

यहाँ बहुत सारे फल रखे हुए हैं टोकरी में बहुत सारा फल रखा हुआ है सामने हरे कलर के अंगूर दिख रही है।

बॉक्स अलमारी में बहुत से डब्बे में समान रखी हुई है।

बहुत सारे लोग हैं जो स्वेटर जैकेट पहने बर्फ पे चल रहे हैं।